ये ऐलिक का शोरूम है यहां पे माइक्रोवेव वाशिंग मशीन कलरफुल वाशिंग मशीन ऑटोमेटिक --

एक बिल्डिंग के सामने दो कार खड़ी हैं एक बोलेरो है।

एल_जी टू इन वॉश मशीन की एक शॉप है जहां पे वाशिंग मशीनंस ऑटोमेटिक वाली भी है और फ्रिज रखी है एल_जी की --

और तीन चार अंकल खड़े हैं एक लेडीज खड़ी है।

एक कहते के बाहर दो लड़कियां सेल्फी ले रही है चीज करके उनके ह इसके ह पहली वाली लड़की के हाथ में फोन है।

लड़की के हाथ में कड़ा है धागा है लड़कियों के बाल खुले हुए हैं।

वाइट कलर की गाड़ी है रेड कलर के उसमें लाइट है एक दो पहिए डले हैं दो खंभे लगे हैं एक अंकल खड़े हैं रेड शर्ट पहन के--

यहां एक दीवार है दीवार में जाइलोफोन एक गिटार है एक तबला है एक पियानो है एक झुंझुर है।

बहुत ही अच्छे से तरासा गया है इनके पीछे एक मोर बैठी हुई है वह बांसुरी लिए हैं हाथ में सर पे मोर पंख है और उनके पीछे कुछ अल--